इस्कूल बस स्टेट बस सब बस आते है।

बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स है एक फैन है।

थर्टीन बज रहे हैं मतलब --

इधर देख रहे हैं एक बड़ा-बड़ा गेट हैं। लोहे का गेट हैं लोहे का हैं। लोहे का बड़ा गेट हैं। नील कलर हैं।

देख पा रहे हैं एक बाद सा काउन्टर लगता है बोहोत बड़ा बिल्डिंग है। सामने बोहोत ही छोटा-छोटा रे रेड कलर का --

ये देखो ये बड़ा-सा डैम है। जो पानी फुल हो गया है अभी-अभी पानी छोड़ा है तो बोहोत ही अच्छा लग रहा है। पानी छोड़ा है। पानी ।

बोहोत ही नजवाब सुन्दर एकदम मौसम लग रहा हे ।

इधर दिख पा रहे हैं एक दुकान हैं। दुकान पे माला मिलेगा।